मुझे इस फोटो पर जंगल दिखाई दे रहा है।

कुछ चौराहा दिखाई दे रहा है।

चार लोग दिखाई दे रहे हैं।